हुए हैं ग्राउंड में एक ही गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी का कलर वाइट कलर का--

है और यहां पर येलो कलर का--

मेरे सामने एक फार्म हाउस दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने ओम शिव शक्ति वैष्णो फैमिली ढाबा दिखाई दे रहा है और इसके--

क्रिकेट के पीछे परकिल्ली भी गड़ी हुई है किल्लियों का कलर येलो कलर का--

मेरे सामने एक फुव्वारे का समान दिखाई दे रहा है और इसमें--

मेरे सामने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लैक कलर का है।

व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की भी दिखाई दे रही--

रेड कलर की और व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं फर्स्ट राउंड में--

यह डी_जे में बहोत सारी लाइटे भी लगाई गई है।